एक साइड एक खम्भा लगा दिख रहा है और अच्छा हरा पेड़ भी दिख रहा है ऐसे लगता है जैसे कनेर का पेड़--

यहाँ पर भी मंदिर दिख रही है दिख रहा है जिस में कोई देवी विराजमान है और निचे शंकर जी भोलेनाथ विराजमान है नंदी जी विराजमान है।

यहाँ पर एक कुर्सी भी धरी दिख रही है काले कलर की यहाँ पर हरी वाले कपड़े दिख रहे है कुछ पुतले पहने कपड़े दिख रहे हैं।

यहाँ पर भी आधी बड़ी सिटी सी दिख रही है यहाँ पर बहुत सारा जंगल सा दिख रहा है।

यहाँ पर दोनों साइडों में दो अंगरख खड़े हुए दिख रहे है यहाँ पर बोर्ड पर छोटे-छोटे गेटों पर लिखा हुआ--

यहाँ पर हरे-भरे पेड़ लगे हुए दिख रहे है यहाँ पर अच्छा बढ़िया रोड बना हुआ दिख रहा है एक मोटर साइकल खड़ी दिख --

दिख रहे है यहाँ पर छोटी-छोटी दूर्वा सी लगी दिख रही है।